एक दुकान है दुकान में बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं।

ये सीढ़ियां कलर भी हो रहा है और क्रीम कलर का कलर भी हो रहा है।

दीवार पर दो होल दिखाई दे रहे हैं।

डीग्गी में बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में कुछ आदमी हैं कुछ जे लेडिस हैं यहां पर।

एक माइक है यहां पर।

एक आदमी पुल पर खड़ा हुआ है।

और ऊपर बादल भी है।

एक दानव का मुखौटा --

बहुत सारे आग बुझाने वाले सिलेंडर रखे हैं यहां पर बहुत सारी छत में लाइटे लगी हुई है।

बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं यहां पर।

इस कमरे में एक बेड पड़ा हुआ है बहुत सारी लाइट लगी हुई है।

गेट लगा हुआ है बहुत सारे परदे लगे हुए हैं।

उसके अंदर बहुत सारे हिरन है।

एक ट्रैक्टर है दो गाड़ी है चार आदमी ट्रैक्टर पर बैठे हैं दो--

दुकान में अंदर कुछ सामान भी रखा हुआ है यहां पर।

एक घर सा बना हुआ है एक पानी में नाव--

दुकान टीन की बनी हुई है।

निचे भी लगा हुआ है।

टाइल्स लगी हुई है कुछ लाल है कुछ पीली है।

यहां पर प्याज भी रखी है टमाटर भी रखे हुए है एक दो तीन चार बेड भी रखे हैं यहां पर।

इसके पीछे माल भरा हुआ है कुछ भी बिछी हुई है यहां पर।

टीन का सेट ऊपर पड़ा हुआ है।

एक अंदर खड़ा हुआ आदमी पैसे निकाल रहा है। ए_टी_एम का गेट खुला हुआ है।

दो ये खंभे खड़े हुए हैं कुछ पेड़ खड़े हुए हैं फूल के पेड़ खड़े हुए हैं।

इसके पीछे भी रंग बिरंगे बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं दो--

दुकान के अंदर बहुत सारे कट्टे रखे हुए हैं।

एक है उसमें कुछ लाइट लगी हुई है।

एक हलवाई की दुकान है उसकी दुकान के बाहर बैटरा रखा हुआ है एक गैस सिलेंडर रखा हुआ है।

बिस्किट भी रखे हुए हैं दुकान पर।